जो एक ब्राह्मण का रूप लिया हुआ है लिखा हुआ है दुनिया में सब मोह माया है कहीं धूप कहीं छाया है भाई साहब क्या ही बोलू क्या लाइन है भाई साहब ।

बहुत ही हिरण है यहां पे ये चिड़ियाघर का सीन है भाईसाहब यहाँ बहुत सारे बहुत प्रकार के जानवर रहते है।